और लाइनिंग भी लिखा हुआ है बहुत अच्छा से |

और टाइल्स लगे हैं टी.वी. भी लगे हैं और सोफा भी रखे हैं। बहुत अच्छा दृश्य है बहुत अच्छे से सजाया हुआ भी है। हम लोग भी ऐसे करते हैं और हम लोग भी जो हैं ऐसे रखे हैं। बहुत अच्छे हैं ये।

यहाँ देखिये कितना चौड़ा रोड है। उधर मोटरसाइकिल वाले भी आ रहे। टेम्पो भी है। कार भी खड़े है।

पिलर है। देखिये एक खम्बे में चार-चार लाइटें टाँगा हुआ है। इधर तार देखिये कितना लटका हुआ है ऊपर से। वहाँ बिल्डिंग --

वहाँ सामने भी घासें हैं हरियाली है। आसमान भी देखिए कितना अच्छा लग रहे हैं देखने में। सामने पेड़ भी दिख रहा है। बहुत सारे पेड़ है आगे। नदी में पानी --

यहाँ देखिये कितना अच्छा बगीचा लग रहा है देखने में यहाँ हरियाली देखिये इसमें लड़ी लगा हुआ है। लाइट भी है। नारियल का पेड़ है। यानि बहोत सारे पेड़ हैं।